के आगे बहोत सारी बुक्स रखी हैं अलमारी मे और यहाँ पे सामान रखा हुआ है। और --

एक ऊँचा पहाड़ भी है कई सारे पेड़ पौधे हैं वो भी लगे हुए हैं ब्लैक कलर के यहाँ पे बहोत सारे --

यहाँ पे शटर लगे हुई हैं और तारे लगे हुए हैं गेट है एक शटर है बहोत बड़ी और यहाँ पर --

और छोटी छोटी पत्तियां भी रही है नीचे से रास्ता --